और बगल में ये कार में बैठा हुआ है कुर्सी पे--

यहाँ पे एक चौकी भी है एक बच्चा भी बैठा हुआ है एक आदमी खला है उधर साइड में एगो आदमी बइठ के कुछ कल लला --

पीछे में बहुत सारा घर भी है।

यहां पे बहुत अच्छा डेकोरेशन किया गया है।

और यहां पे बहुत सारे आदमी खड़े भी हैं।

कुछ वर्कर ड्रम में पानी भर रहे हैं।

यहां पे बहुत सारे मेडल टांगे हुए है हैं।

ऊपर में अवेस्टल रखा हुआ है।

ये एक हार्डवेयर का भी दुकान है।

दो तीन कुर्सी भी है औल एक काउंटर --

पीछे में बहोत सारा कुर्सी भी है।

और एक एल्वेस्टर का भी मकान इसमें है।

ये एक घर है जहां पे पेंटिंग का काम चल रहा है और यहां का--

जहां पे बहोत सारे बाइक सब लगे हुए हैं।

यहां पे बहोत सारे बच्चे योगा कर रहे हैं।

ये एक हॉस्पिटल का फोटो है।